और इसके किनारे किनारे हरे कलर के--

जिसमे छः विंडोज है और दो दरवाजे है।

और इसके आस पास ढेर सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

और यहां पे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं।

जिम करने के लिए और कलरफुल सीढ़ियां है।

में और एक चेयर दिखाई दे रहा है और एक अलमीरा है जिसके ऊपर एक ब्लू कलर का बोतल रखा हुआ है और--

और इसमें एक विंडो है जिसपे परदे लगे हुए हैं।

पोस्टर ब्लू कलर का है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

और ये किसी रूम में रखा हुआ है इस रूम का कलर ग्रीन है।

और इन तीनों के अ तीनों बच्चों के हाथ में ए तिरंगा दिख रहा है।

और यहां पे वायरिंग की हुई है यहां पे परदे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है और यह दुकान सैलून की लग रही है।

और कार के पीछे एक मस्जिद है बहुत बड़ा सा।

एक आदमी बैडमिंटल खेल रहा है उधर से और एक मारने के लिए तैयार है यहां पे।

इस बस में ढेर सारे आदमी है और एक आदमी उतर रहा है बस से।